जैसा की आप देख सकते हैं ये एक रास्ते का पिक है जहां पे दोनों साइड खड़े हैं बीच में दो बाइक रखे हुए हैं उधर एक रिक्शा हुआ है उधर देखिए व्हाइट कलर का एक घर है इसमें रेड कलर के परदे लगे हुए हैं इधर येलो कलर का घर है और इधर हैं।

टेबल बहोत सुंदर यहां पे हैं लग रहे हैं।

और इसके एक के हाथ में फोन है| कड़ा पहन रखा है उसके हाथ में कुछ रबड़ बैंड भी लगा हुआ है और यहाँ पे सिटी कैफ़े लिखा हुआ है उसी के बाहर का पिक है बहुत ही सुंदर लग रहा | एक लड़का है जो बाइक पर बैठा हुआ है ब्लैक कलर का टी-शर्ट और ब्लैक कलर का बाइक है उसका ।

जैसा की आप देख सकते हैं की ये एक दुकान का पिक है जिसके ऊपर वी.आई.पी. लिखा हुआ है और यहाँ पे भारत स्टोर भी लिखा हुआ है भारत स्टोर्स शोरूम और यहाँ पे एक आदमी है जो कुछ खरीदने जा रहा है यहाँ पे यहाँ पे बहुत प्रेशर कुकर वगेरा भी मिल रहे हैं सब कुछ मिल रहे --

अनलिमिटेड है इसको गिना नहीं जा सकता इसको गिना जा सकता है लेकिन अभी नहीं गिना जाता सकता अभी किसी को गिनने का मो --